देखने में बहुत मस्त लगते है दिखाई देती है बहुत अच्छा लग रहा है देखने में---

और ये खटगरा भी रखा गया है और इसमे एक महिलाई भी है और एक आदमी भी घुसा हुआ है और देखने मे बहुत ही अच्छा लग रहा है।

और ये भी फील्ड बहुत मस्त लगता है ये चार चक्का लग रहा है दिखने में बहुत बढिया है यह हरा-भरा भी दिखाई देता है।

कुछ टंग रहा है देखने में और ये मस्त लगता है देखने में और अच्छा लग रहा है।

बढ़िया लगता है देखने मे अभी सुंदर लग रहा है देखने में सुपौल का रेलवे स्टेशन है।